और उसी शिक्षा से जो भी हम नौकरी प्राप्त करते है एंड काफी --

ये काफी दो लोग वहाँ बहादुर दिखाई दे रहे है हमे और जो भी यहाँ से कोई दवाई या --

ये एक बम्बा दिखाय दे रहा है जो कि इसकी काफी सफाई नहीं हुई है। ये काफी गंदा पड़ा हुआ है जो कि इसका काई भी जम गई है।

होटल बनाया हुआ है पैलिस बनाया गया है जोकि एस जी रिज़ॉर्ट में एस जी पी के नाम से बनाया गया है श्री जी पैलिस --

पानी हवा एतना आजाम प्रतिदिन दिन में पांच बार अपनी --

पे और काफी बड़ा ऑटो है जो कि मैं सफ़र कराता हूँ। मैं मार्ग ओर्ग जाती हैं तो अपने ऑटो का ही और जो कि यहाँ पे कई सारे ऑटो खड़े हुए हैं। यहाँ की पश्चिमी आगे पीछे देख रहे हैं हमें। बड़ी --